मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस देश के कोनेकोने में उमंग और उत्साह के साथ हम सबने मनाया
भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य नागरिकों के अधिकार लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक प्रकार से ये संस्कार उत्सव भी है जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति लोकतान्त्रिक जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है संस्कारित भी करता है
लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार उस पर जितनी बहस होनी चाहिए जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रही है
मैं आशा करता हूँ कि हर स्तर पर हर वक़्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए
अधिकार और कर्तव्य की दो पटरी पर ही भारत के लोकतंत्र की गाड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ सकती है
कल 30 जनवरी है हमारे पूज्य बापू की पुण्य तिथि है
30 जनवरी को हम सब सुबह 11 बजे 2 मिनट मौन रख करके देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं
एक समाज के रूप में एक देश के रूप में 30 जनवरी 11 बजे 2 मिनट श्रद्धांजलि यह सहज स्वभाव बनना चाहिए
2 मिनट क्यों न हो लेकिन उसमें सामूहिकता भी संकल्प भी और शहीदों के प्रति श्रद्धा भी अभिव्यक्त होती है
हमारे देश में सेना के प्रति सुरक्षा बलों के प्रति एक सहज आदर भाव प्रकट होता रहता है
इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जो वीरजवान सम्मानित हुए उनको उनके परिवारजनों को मैं बधाई देता हूँ
इन पुरस्कारों में कीर्ति चक्र शौर्य चक्र परम विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल अनेक श्रेणियाँ हैं
मैं ख़ास करके नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ
आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं
आप एक काम कर सकते हैं इस बार जिनजिन वीरों को ये सम्मान मिला है आप नेट पर खोजिए उनके संबंध में दो अच्छे शब्द लिखिए और अपने साथियों में उसको पहुँचाइए
जब उनके साहस की वीरता की पराक्रम की बात को गहराई से जानते हैं तो हमें आश्चर्य भी होता है गर्व भी होता है प्रेरणा भी मिलती है
एक तरफ़ हम सब 26 जनवरी की उमंग और उत्साह की ख़बरों से आनंदित थे तो उसी समय कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं वे हिमस्खलन के कारण वीरगति को प्राप्त हुए
मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ नमन करता हूँ
मेरे युवा साथियो आप तो भलीभाँति जानते हैं कि मैं मन की बात लगातार करता रहता हूँ
जनवरी फ़रवरी मार्च अप्रैल ये सारे महीने हर परिवार में कसौटी के महीने होते हैं
घर में एकआध दो बच्चों की एक्साम होती हैं लेकिन पूरा परिवार एक्साम के बोझ में दबा हुआ होता है
तो मेरा मन कर गया कि ये सही समय है कि मैं विद्यार्थी दोस्तों से बातें करूँ उनके अभिवावकों से बातें करूँ उनके शिक्षकों से बातें करूँ
क्योंकि कई वर्षों से मैं जहाँ गया जिसे मिला परीक्षा एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण नज़र आया
परिवार परेशान विद्यार्थी परेशान शिक्षक परेशान एक बड़ा विचित्र सा मनोवैज्ञानिक वातावरण हर घर में नज़र आता है
और मुझे हमेशा ये लगा है कि इसमें से बाहर आना चाहिये और इसलिये मैं आज युवा साथियों के साथ कुछ विस्तार से बातें करना चाहता हूँ
जब ये विषय मैंने घोषित किया तो अनेक शिक्षकों ने अभिभावकों ने विद्यार्थियों ने मुझे मेसेज भेजे सवाल भेजे सुझाव भेजे पीड़ा भी व्यक्त की परेशानियों का भी ज़िक्र किया और उसको देखने के बाद जो मेरे मन में विचार आए वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ
मुझे एक टेलीफोन सन्देश मिला सृष्टि का
आप भी सुनिए सृष्टि क्या कह रही है
सर मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक्साम्स के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में आसपड़ोस में हमारी सोसाइटी में बहुत ही ख़ौफ़नाक और डरावना माहौल बन जाता है
इस वजह से स्टूडेंट इंस्पिरेशन तो कम लेकिन डाउन बहुत हो जाते है
तो मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये माहौल ख़ुशनुमा नहीं हो सकता
खैर सवाल तो सृष्टि ने पूछा है लेकिन ये सवाल आप सबके मन में होगा
परीक्षा अपनेआप में एक ख़ुशी का अवसर होना चाहिये
साल भर मेहनत की है अब बताने का अवसर आया है ऐसा उमंगउत्साह का ये पर्व होना चाहिए
बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एक्साम में प्लेजर होती है ज़्यादातर लोगों के लिए एक्साम एक प्रेशर होती है
निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे
जो प्लेजर मानेगा वो पायेगा जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा
और इसलिये मेरा मत है कि परीक्षा एक उत्सव है परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो त्योहार है
और जब त्योहार होता है जब उत्सव होता है तो हमारे भीतर जो सबसे बेस्ट होता है वही बाहर निकल कर के आता है
समाज की भी ताक़त की अनुभूति उत्सव के समय होती है
जो उत्तम से उत्तम है वो प्रकट होता है
सामान्य रूप से हमको लगता है कि हम लोग कितने इंडिसिप्लिंड हैं लेकिन जब 4045 दिन चलने वाले कुम्भ के मेलों की व्यवस्था देखें तो पता चलता है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट और क्या डिसिप्लिन है लोगों में
ये उत्सव की ताक़त है
एक्साम में भी पूरे परिवार में मित्रों के बीच आसपड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिये
आप देखिए ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा
उत्सवपूर्ण वातावरण बोझमुक्त बना देगा
और मैं इसमें मातापिता को ज़्यादा आग्रह से कहता हूँ कि आप इन तीनचार महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए
पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनीअपनी भूमिका उत्साह से निभाए
देखिए देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा
हक़ीक़त तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से ले करके कामरूप तक अमरेली से ले करके अरुणाचल प्रदेश तक ये तीनचार महीने परीक्षा ही परीक्षायें होती हैं
ये हम सब का दायित्व है कि हम हर वर्ष इन तीनचार महीनों को अपनेअपने तरीक़े से अपनीअपनी परंपरा को लेते हुए अपनेअपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें
और इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा स्माइल मोरे स्कोर मोरे जितनी ज़्यादा ख़ुशी से इस समय को बिताओगे उतने ही ज़्यादा नंबर पाओगे करके देखिए
और आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं मुस्कुराते हैं तो आप रिलैक्स अपनेआप को पाते हैं
आप सहज रूप से रिलैक्स हो जाते हैं और जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपकी वर्षों पुरानी बातें भी सहज रूप से आपको याद आ जाती हैं
एक साल पहले क्लासरूम में टीचर ने क्या कहा पूरा दृश्य याद आ जाता है
और आपको ये पता होना चाहिए मेमोरी को रिकॉल करने का जो पॉवर है वो रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा होता है
अगर आप तनाव में है तो सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं बाहर का अंदर नहीं जाता अंदर का बाहर नहीं आता है
विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है वो अपनेआप में एक बोझ बन जाता है
एक्साम में भी आपने देखा होगा आपको सब याद आता है
किताब याद आती है चैप्टर याद आता है पेज नंबर याद आता है पेज में ऊपर की तरफ़ लिखा है कि नीचे की तरफ़ वो भी याद आता है लेकिन वो पार्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है
लेकिन जैसे ही एक्साम दे करके बाहर निकलते हो और थोड़ा सा कमरे के बाहर आए अचानक आपको याद आ जाता है हाँ यार यही शब्द था
अंदर क्यों याद नहीं आया प्रेशर था
बाहर कैसे याद आया आप ही तो थे किसी ने बताया तो नहीं था
लेकिन जो अंदर था तुरंत बाहर आ गया और बाहर इसलिये आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए
और इसलिये मेमोरी रिकॉल करने की सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है तो वो रिलैक्सेशन है
और ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि अगर प्रेशर है तो अपनी चीज़ें हम भूल जाते हैं और रिलैक्स हैं तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते अचानक ऐसीऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं वो बहुत काम आ जाती हैं
और ऐसा नहीं है कि आप के पास नाउलेज नहीं है ऐसा नहीं है कि आप के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है
लेकिन जब टेंशन होता है तब आपका नाउलेज आपका ज्ञान आपकी जानकारी नीचे दब जाती हैं और आपका टेंशन उस पर सवार हो जाता है
और इसलिये आवश्यक है आ हैपी माइंड इस थे सीक्रेट फोर आ गुड मार्कशीट
कभीकभी ये भी लगता है कि हम प्रॉपर परस्पेक्टिव में परीक्षा को देख नहीं पाते हैं
ऐसा लगता है कि वो जीवनमरण का जैसे सवाल है
आप जो एक्साम देने जा रहे हैं वो साल भर में आपने जो पढ़ाई की है उसकी एक्साम है
ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है
आपने कैसा जीवन जिया कैसा जीवन जी रहे हो कैसा जीवन जीना चाहते हो उसकी एक्साम नहीं है
आपके जीवन में क्लासरूम में नोटबुक ले करके दी गई परीक्षा के सिवाय भी कई कसौटियों से गुज़रने के अवसर आए होंगे
और इसलिये परीक्षा को जीवन की सफलताविफलता से कोई लेनादेना है ऐसे बोझ से मुक्त हो जाइए
हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है
वे वायुसेना में भर्ती होने गए फैल हो गए
मान लीजिए उस विफलता के कारण अगर वो मायूस हो जाते ज़िंदगी से हार जाते तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते नहीं मिलते
कोई ऋचा आनंद जी ने मुझे एक सवाल भेजा है
आज के इस दौर में शिक्षा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती देख पाती हूँ वो यह कि शिक्षा परीक्षा केन्द्रित हो कर रह गयी है
अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं
इसकी वजह से प्रतिस्पर्द्धा तो बहुत बढ़ी ही है साथ में विद्यार्थियों में तनाव भी बहुत बढ़ गया है
तो शिक्षा की इस वर्तमान दिशा और इसके भविष्य को ले करके आपके विचारों से अवगत होना चाहूँगी
वैसे उन्होंने ख़ुद ने ही जवाब दे ही दिया है लेकिन ऋचा जी चाहती हैं कि मैं भी इसमें कुछ अपनी बात रखूँ
मार्क्स और मार्क्सशीट इसका एक सीमित उपयोग है
ज़िंदगी में वही सब कुछ नहीं होता है
ज़िंदगी तो चलती है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है
ज़िंदगी तो चलती है कि आपने जो जाना है उसको जीने का प्रयास किया है क्या ज़िंदगी तो चलती है कि आपको जो एक सेंसे ओएफ मिशन मिला है और जो आपका सेंसे ओएफ एम्बिशन है ये आपके मिशन और एम्बिशन के बीच में कोई तालमेल हो रहा है क्या अगर आप इन चीज़ों में भरोसा करोगे तो मार्क्स पूँछ दबाते हुए आपके पीछे आ जाएँगे आपको मार्क्स के पीछे भागने की कभी ज़रुरत नहीं पड़ेगी
जीवन में आपको नाउलेज काम आने वाला है स्किल काम आने वाली है आत्मविश्वास काम आने वाला है संकल्पशक्ति काम आने वाली है
आप ही मुझे बताइए आपके परिवार के कोई डॉक्टर होंगे और परिवार के सब लोग उन्हीं के पास जाते होंगे फैमिली डॉक्टर होते हैं
आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने फैमिली डॉक्टर को कभी वो कितने नंबर से पास हुआ था पूछा होगा
किसी ने नहीं पूछा होगा
बस आपको लगा कि भाई एक डॉक्टर के नाते अच्छे हैं आप लोगो को लाभ हो रहा है आप उसकी सेवाएँ लेना शुरू किए
आप कोई बड़ा से बड़ा केस लड़ने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं तो क्या उस वकील की मार्क्सशीट देखते हैं क्या आप उसके अनुभव को उसके ज्ञान को उसकी सफलता की यात्रा को देखते हैं
और इसलिये ये जो अंक का बोझ है वो भी कभीकभी हमें सही दिशा में जाने से रोक देता है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि बस पढ़ना ही नहीं है
अपनी कसौटी के लिए उसका उपयोग ज़रुर है
मैं कल था आज कहाँ हूँ वो जानने के लिए ज़रुरी है
कभीकभार ये भी होता है और अगर बारीक़ी से आप अपने स्वयं के जीवन को देखोगे तो ध्यान में आएगा कि अगर अंक के पीछे पड़ गए तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते खोजोगे सिलेक्टेड चीजों को ही पकड़ोगे और उसी पर फोकस करोगे
लेकिन आपने जिन चीज़ों पर हाथ लगाया था उसके बाहर की कोई चीज़ आ गई आपने जो सवाल तैयार किए थे उससे बाहर का सवाल आ गया तो आप एकदम से नीचे आ जाएँगे
अगर आप ज्ञान को केंद्र में रखते हैं तो बहुत चीज़ों को अपने में समेटने का प्रयास करते हो
लेकिन अंक पर फोकस करते हो मार्क्स पर फोकस करते हो तो आप धीरेधीरे अपनेआप को सिकुड़ते जाते हो और एक निश्चित एआरईए तक अपने आपको सीमित करके सिर्फ मार्क्स पाने के लिये
तो हो सकता है कि एक्साम में होनहार बनने के बावजूद भी जीवन में कभीकभी विफल हो जाते हैं
ऋचा जी ने एक बात ये भी कही है प्रतिस्पर्द्धा
ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक लड़ाई है
सचमुच में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा काम नहीं आती है
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनुस्पर्द्धा काम आती है और जब हम अनुस्पर्द्धा मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है स्वयं से स्पर्द्धा करना
बीते हुए कल से आने वाला कल बेहतर कैसे हो बीते हुए परिणाम से आने वाला अवसर अधिक बेहतर कैसे हो अक्सर आपने खेल जगत में देखा होगा
क्योंकि उसमें तुरंत समझ आता है इसलिए मैं खेल जगत का उदहारण देता हूँ
ज़्यादातर सफल खिलाड़ियों के जीवन की एक विशेषता है कि वो अनुस्पर्द्धा करते हैं
अगर हम श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी का ही उदहारण ले लें
बीस साल लगातार अपने ही रेकॉर्ड तोड़ते जाना खुद को ही हर बार पराजित करना और आगे बढ़ना
बड़ी अदभुत जीवन यात्रा है उनकी क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्द्धा से ज्यादा अनुस्पर्द्धा का रास्ता अपनाया
जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तो और जब आप एक्साम देने जा रहे हैं तब पहले अगर दो घंटे पढ़ पाते थे शान्ति से वो तीन घंटे कर पाते हो क्या पहले जितने बजे सुबह उठना तय करते थे देर हो जाती थी क्या अब समय पर उठ पाते हो क्या पहले परीक्षा की टेंशन में नींद नहीं आती थी अब नींद आती है क्या ख़ुद को ही आप कसौटी पर कस लीजिए और आपको ध्यान में आएगा प्रतिस्पर्द्धा में पराजय हताशा निराशा और ईर्ष्या को जन्म देती है लेकिन अनुस्पर्द्धा आत्मंथन आत्मचिंतन का कारण बनती है संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाती है और जब ख़ुद को पराजित करते हैं तो और अधिक आगे बढ़ने का उत्साह अपनेआप पैदा होता है बाहर से कोई एक्सट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है
भीतर से ही वो ऊर्जा अपनेआप पैदा होती है
अगर सरल भाषा में मुझे कहना है तो मैं कहूँगा जब आप किसी से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं तो तीन संभावनायें मोटीमोटी नज़र आती हैं
एक आप उससे बहुत बेहतर हैं
दूसरा आप उससे बहुत ख़राब हैं या आप उसके बराबर के हैं
अगर आप बेहतर हैं तो बेपरवाह हो जाएँगे अति विश्वास से भर जाएँगे
अगर आप उसके मुक़ाबले ख़राब करते हैं तब दुखी और निराश हो जाएँगे ईर्ष्या से भर जाएँगे जो ईर्ष्या आपको अपनेआप को खाती जाएगी और अगर बराबरी के हैं तो सुधार की आवश्यकता आप कभी महसूस ही नहीं करोगे
जैसी गाड़ी चलती है चलते रहोगे
तो मेरा आपसे आग्रह है अनुस्पर्द्धा का ख़ुद से स्पर्द्धा करने का
पहले क्या किया था उससे आगे कैसे करूँगा अच्छा कैसे करूँगा
बस इसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए
आप देखिए आपको बहुत परिवर्तन महसूस होगा
श्रीमान एस सुन्दर जी ने अभिभावकों की भूमिका के संबंध में अपनी भावना व्यक्त की है
उनका कहना है कि परीक्षा में अभिभावकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है
उन्होंने आगे लिखा है मेरी माँ पढ़ीलिखी नहीं थी फिर भी वह मेरे पास बैठा करती थी और मुझसे गणित के सवाल हल करने के लिये कहती थी
वह उत्तर मिलाती और इस तरह से वो मेरी मदद करती थी
ग़लतियाँ ठीक करती थी
मेरी माँ ने दसवीं की परीक्षा पास नहीं की लेकिन बिना उनके सहयोग के मेरे लिये cbsई
के एक्साम पास करना नामुमकिन था
सुन्दर जी आपकी बात सही है और आज भी देखा होगा आपने मुझे सवाल पूछने वाले सुझाव देने वालों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है क्योंकि घर में बालकों के भविष्य के संबंध में मातायें जो सजग होती हैं सक्रिय होती हैं वे बहुत चीज़ें सरल कर देती हैं
मैं अभिभावकों से इतना ही कहना चाहूँगा तीन बातों पर हम बल दें
स्वीकारना सिखाना समय देना
जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए
आपके पास जितनी क्षमता है आप मेंटर कीजिए आप कितने ही व्यस्त क्यों न हों समय निकालिए टाइम दीजिए
एक बार आप एक्सेप्ट करना सीख लेंगे अधिकतम समस्या तो वही समाप्त हो जाएगी
हर अभिभावक इस बात को अनुभव करता होगा अभिभावकों का टीचरों का एक्सपेक्टेशन समस्या की जड़ में होता है
एक्सेप्टेंस समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलता है
अपेक्षायें राह कठिन कर देती हैं
अवस्था को स्वीकार करना नए रास्ते खोलने का अवसर देती है और इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए
आप भी बोझमुक्त हो जाएँगे
हम लोग छोटे बच्चों के स्कूल बाग के वज़न की चर्चा करते रहते हैं लेकिन कभीकभी तो मुझे लगता है कि अभिभावकों की जो अपेक्षायें होती हैं उम्मीदें होती हैं वो बच्चे के स्कूल बाग से भी ज़रा ज़्यादा भारी हो जाती हैं
बहुत साल पहले की बात है
हमारे एक परिचित व्यक्ति हर्ट अटैक के कारण अस्पताल में थे तो हमारे भारत के लोक सभा के पहले स्पीकर गणेश दादा मावलंकर उनके पुत्र पुरुषोत्तम मावलंकर वो कभी mप
भी रहे थे वो उनकी तबीयत देखने आए
मैं उस समय मौजूद था और मैंने देखा कि उन्होंने आ करके उनकी तबीयत के संबंध में एक भी सवाल नहीं पूछा
बैठे और आते ही उन्होंने वहाँ क्या स्थिति है बीमारी कैसी है कोई बातें नहीं चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया और पहले दोचार मिनट में ही ऐसा माहौल उन्होंने हल्काफुल्का कर दिया
एक प्रकार से बीमार व्यक्ति को जाकर के जैसे हम बीमारी से डरा देते हैं
अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कभीकभी हम भी बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं
क्या आपको कभी लगा कि एक्साम के दिनों में बच्चों को हँसीख़ुशी का भी कोई माहौल दें
आप देखिए वातावरण बदल जाएगा
एक बड़ा कमाल का मुझे फोन कॉल आया है
वे सज्जन अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं
फोन सुन कर के आपको पता चलेगा कि वो अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहते हैं
नमस्कार प्रधानमंत्री जी मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने काम ही कुछ ऐसा किया था अपने बचपन में
मैंने बचपन में एक बार नक़ल करने की कोशिश की थी उसके लिये मैंने बहुत तैयारी करना शुरू किया कि मैं कैसे नक़ल कर सकता हूँ उसके तरीक़ों को ढूँढ़ने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया
उस टाइम में मैं पढ़ करके भी उतने ही नंबर ला सकता था जितना मैंने नक़ल करने के लिए दिमाग लगाने में ख़र्च किया
और जब मैंने नक़ल करके पास होने की कोशिश की तो मैं उसमें पकड़ा भी गया और मेरी वजह से मेरे आसपास के कई दोस्तों को काफ़ी परेशानी हुई
आपकी बात सही है
ये जो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं वो नक़ल करने के लिये कारण बन जाते हैं
कभीकभार ख़ुद पर विश्वास नहीं होने के कारण मन करता है कि बगल वाले से ज़रा देख लूँ कनफर्म कर लूँ मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं है और कभीकभी तो हमने सही लिखा होता है लेकिन बगल वाले ने झूठा लिखा होता है तो उसी झूठ को हम कभी स्वीकार कर लेते हैं और हम भी मर जाते हैं
तो नक़ल कभी फ़ायदा नहीं करती है
टो cheat
s टो बीई चीप सो प्लीज डीओ नोट cheat
नक़ल आपको बुरा बनाती है इसलिये नक़ल न करें
आपने कई बार और बारबार ये सुना होगा कि नक़ल मत करना नक़ल मत करना
मैं भी आपको वही बात दोबारा कह रहा हूँ
नक़ल को आप हर रूप में देख लीजिए वो जीवन को विफल बनाने के रास्ते की ओर आपको घसीट के ले जा रही है और एक्साम में ही अगर निरीक्षक ने पकड़ लिया तो आपका तो सबकुछ बर्बाद हो जाएगा और मान लीजिए किसी ने नहीं पकड़ा तो जीवन पर आपके मन पर एक बोझ तो रहेगा कि आपने ऐसा किया था और जब कभी आपको अपने बच्चों को समझाना होगा तो आप आँख में आँख मिला कर के नहीं समझा पाओगे
और एक बार नक़ल की आदत लग गई तो जीवन में कभी कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगी
फिर तो आप कहाँ पहुँच पाओगे
मान लीजिए आप भी अपने रास्तों को गड्ढे में परिवर्तित कर रहे हो और मैंने तो देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नक़ल के तौरतरीक़े ढूँढ़ने में इतनी टैलेंट का उपयोग कर देते हैं इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी जो है वो नक़ल करने के तौरतरीक़ों में खपा देते हैं
अगर वही क्रिएटिविटी यही टाइम आप अपने एक्साम के मुद्दों पर देते तो शायद नक़ल की ही ज़रुरत नहीं पड़ती
अपनी ख़ुद की मेहनत से जो परिणाम प्राप्त होगा उससे जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो अद्भुत होगा
एक फोन कॉल आया है
नमस्कार प्रधानमंत्री जी
माय नामे इस मोनिका एंड सिंस आई एएम आ क्लास 12th स्टूडेंट आई वांटेड टो एएसके यू आ कपल ओएफ क्वेशंस रिगार्डिंग थे बोर्ड एक्साम्स माय फर्स्ट क्वेस्शन इस व्हाट कैन वे डीओ टो रिड्यूस थे स्ट्रेस थाट बिल्ड्स यूपी ड्यूरिंग और एक्साम्स एंड माय सेकंड क्वेस्शन इस व्हाई एक्साम्स अल्ल अबाउट वर्क एंड नो प्ले एआरई
अगर परीक्षा के दिनों में मैं आपको खेलकूद की बात करूँगा तो आपके टीचर आपके पेरेंट्स ये मुझ पर गुस्सा करेंगे वो नाराज़ हो जाएँगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है बच्चों को एक्साम के समय में कह रहा है खेलो
क्योंकि आम तौर पर धारणा ऐसी है कि अगर विद्यार्थी खेलकूद में ध्यान देते हैं तो शिक्षा से बेध्यान हो जाते हैं
ये मूलभूत धारणा ही ग़लत है समस्या की जड़ वो ही है
सर्वांगीण विकास करना है तो किताबों के बाहर भी एक ज़िन्दगी होती है और वो बहुत बड़ी विशाल होती है
उसको भी जीने का सीखने का यही समय होता है
कोई ये कहे कि मैं पहले सारी परीक्षायें पूर्ण कर लूँ बाद में खेलूँगा बाद में ये करूँगा तो असंभव है
जीवन का यही तो मोल्डिंग का टाइम होता है
इसी को तो परवरिश कहते हैं
दरअसल परीक्षा में मेरी दृष्टि से तीन बातें बहुत ज़रुरी हैं प्रॉपर रेस्ट आराम दूसरा जितनी आवश्यक है शरीर के लिये उतनी नींद और तीसरा दिमागी एक्टिविटी के सिवाय भी शरीर एक बहुत बड़ा हिस्सा है
तो शरीर के बाकी हिस्सों को भी फिजिकल एक्टिविटी मिलनी चाहिए
क्या कभी सोचा है कि जब इतना सारा सामने हो तो दो पल बाहर निकल कर ज़रा आसमान में देखें ज़रा पेड़पौधों की तरफ देखें थोड़ासा मन को हल्का करें आप देखिए एक ताज़गी के साथ फिर से आप अपने कमरे में अपनी किताबों के बीच आएँगे
आप जो भी कर रहे हों थोड़ा ब्रेक लीजिए उठ करके बाहर जाइए किचेन में जाइए अपनी पसंद की कोई चीज़ है ज़रा खोजिए अपनी पसंद का बिस्किट मिल जाए तो खाइए थोड़ी हँसीमज़ाक कर लीजिए
भले पांच मिनट क्यों न हो लेकिन आप ब्रेक दीजिए
आपको महसूस होगा कि आपका काम सरल होता जा रहा है
सबको ये पसंद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरा तो अनुभव है
ऐसे समय दीप ब्रीथिंग करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है
गहरी साँस आप देखिए बहुत रिलैक्स हो जाता है
गहरी साँस भी लेने के लिये कोई कमरे में फिट रहने की ज़रुरत नहीं है
ज़रा खुले आसमान के नीचे आएँ छत पर चले जाएँ पांच मिनट गहरी साँस ले करके फिर अपने पढ़ने के लिए बैठ जाएँ आप देखिए शरीर एक दम से रिलैक्स हो जाएगा और शरीर का जो रिलैक्सेशन आप अनुभव करते हैं न वो दिमागी अंगों का भी उतना ही रिलैक्सेशन कर देता है
कुछ लोगों को लगता है रात को देरदेर जागेंगे ज़्यादाज़्यादा पढ़ेंगे जी नहीं शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है वो अवश्य लीजिए उससे आपका पढ़ने का समय बर्बाद नहीं होगा वो पढ़ने की ताक़त में इज़ाफ़ा करेगा
आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपकी ताज़गी आएगी फ्रेशनेस होगा
आपकी एफिशिएंसी में ओवरॉल बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी
मैं जब चुनाव में सभायें करता हूँ तो कभीकभी मेरी आवाज़ बैठ जाती है
तो मुझे एक लोक गायक मिलने आए
उन्होंने मुझे आकर के पूछा आप कितने घंटे सोते हैं
मैंने कहा क्यों भाई आप डॉक्टर हैं क्या नहींनहीं बोले ये आपका आवाज़ जो चुनाव के समय भाषण करतेकरते ख़राब हो जाता है उसका इसके साथ संबंध है
आप पूरी नींद लेंगे तभी आपके वोकल कॉर्ड को पूरा रेस्ट मिलेगा
अब मैंने नींद को और मेरे भाषण को और मेरी आवाज़ को कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने मुझे एक जड़ीबूटी दे दी
तो सचमुच में हम इन चीज़ों का महत्व समझें आप देखिए आपको फ़ायदा होगा
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस सोते ही रहें लेकिन कुछ कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है अब बस जागने की ज़रुरत नहीं है सोते रहना है
तो ऐसा मत करना वरना आपके परिवार के लोग मेरे से नाराज़ हो जाएँगे
और आपकी अगर मार्क्सशीट जिस दिन आएगी तो उनको आप नहीं दिखाई दोगे मैं ही दिखाई दूँगा
तो ऐसा मत करना
और इसलिये मैं तो कहूँगा प फोर प्रीपेयर्ड एंड प फोर प्ले जो खेले वो खिले थे पर्सन व्हो प्लेज शाइन्स
मन बुद्धि शरीर उसको सचेत रखने के लिये ये एक बहुत बड़ी औषधि है
ख़ैर युवा दोस्तो आप परीक्षा की तैयारी में हैं और मैं आपको मन की बातों में जकड़ कर बैठा हूँ
हो सकता है ये आज की मेरी बातें भी तो आपके लिये रिलैक्सेशन का तो काम करेंगी ही करेंगी
लेकिन मैं साथसाथ ये भी कहूँगा मैंने जो बातें बताई हैं उसको भी बोझ मत बनने दीजिए
हो सकता है तो करिए नहीं हो सकता तो मत कीजिए वरना ये भी एक बोझ बन जाएगा
तो जैसे मैं आपके परिवार के मातापिता को बोझ न बनने देने की सलाह देता हूँ वो मुझ पर भी लागू होती हैं
अपने संकल्प को याद करते हुए अपने पर विश्वास रखते हुए परीक्षा के लिये जाइए मेरी बहुत शुभकामनायें हैं
हर कसौटी से पार उतरने के लिये कसौटी को उत्सव बना दीजिए
फिर कभी कसौटी कसौटी ही नहीं रहेगी
इस मंत्र को ले करके आगे बढ़ें
प्यारे देशवासियो 1 फरवरी 2017 इंडियन कोस्ट गार्ड के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं
इस अवसर पर मैं कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिये धन्यवाद देता हूँ
ये गर्व की बात है कि कोस्ट गार्ड देश में निर्मित अपने सभी 126 शिप्स और 62 एयरक्राफ्ट्स के साथ विश्व के 4 सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के बीच अपना स्थान बनाए हुए है
कोस्ट गार्ड का मंत्र है वयम् रक्षामः
अपने इस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए देश की समुद्री सीमाओं और समुद्री परिवेश को सुरक्षित करने के लिये कोस्ट गार्ड के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिनरात तत्पर रहते हैं
पिछले वर्ष कोस्ट गार्ड के लोगों ने अपनी जिम्मेवारियों के साथसाथ हमारे देश के समुद्र तट को स्वच्छ बनाने का बड़ा अभियान उठाया था और हज़ारों लोग इसमें शरीक़ हुए थे
कोस्टल सिक्यूरिटी के साथसाथ कोस्टल क्लीननेस इसकी भी चिंता की उन्होंने ये सचमुच में बधाई के पात्र हैं
और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में कोस्ट गार्ड में सिर्फ़ पुरुष नहीं हैं महिलायें भी कन्धे से कन्धा मिला कर समान रूप से अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहीं हैं और सफलतापूर्वक निभा रहीं हैं
कोस्ट गार्ड की हमारी महिला अफ़सर पाइलट हों आब्जर्वर्स के रूप में काम हों इतना ही नहीं होवरक्राफ्ट की कमान भी संभालती हैं
भारत के तटीय सुरक्षा में लगे हुए और सामुद्रिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय आज विश्व का बना हुआ है तब मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के 40वीं वर्षगांठ पर उनको बहुतबहुत बधाई देता हूँ
1 फरवरी को वसन्त पंचमी का त्यौहार है वसन्त ये सर्वश्रेष्ठ ऋतु के रूप में उसको स्वीकृति मिली हुई है
वसन्त ये ऋतुओं का राजा है
हमारे देश में वसन्त पंचमी सरस्वती पूजा का एक बहुत बड़ा त्योहार होता है
विद्या की आराधना का अवसर माना जाता है
इतना ही नहीं वीरों के लिए प्रेरणा का भी पर्व होता है
मेरा रंग दे बसंती चोला ये वही तो प्रेरणा है
इस वसन्त पंचमी के पावन त्योहार पर मेरी देशवासियों को बहुतबहुत शुभकामनायें हैं
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात में आकाशवाणी भी अपनी कल्पकता के साथ हमेशा नये रंगरूप भरता रहता है
पिछले महीने से उन्होंने मेरी मन की बात पूर्ण होने के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में मन की बात सुनाना शुरू किया है
इसको व्यापक स्वीकृति मिली है
दूरदूर से लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं
मैं आकाशवाणी को उनके इस स्वयं प्रेरणा से किए गए काम के लिये बहुतबहुत अभिनन्दन करता हूँ
देशवासियो में आपका भी बहुत अभिनन्दन करता हूँ
मन की बात मुझे आपसे जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर देती है
बहुतबहुत शुभकामनायें
धन्यवाद